और यहाँ पर सीढ़ियों से गुजरते हमें दिखाई दे रहा है | के यहाँ पर एक छोटी सी कार मौजूद है जो के बच्चो के खेलने के लिए है अ --

इस दृश्य में हम देख सकते हे की यहाँ पर काफी बड़ा मैदान मौजूद हे जहा पर कही लड़के क्रिकेट खेल रहे हे जेसे की हम देख सकते हे अम्पायर के लिय एक आदमी खड़ा बेक स्पेस में हे और एक आदमी क्रिकेट बैट पकड़े--

इस दृश्य मैं हमें एक ऑफिस का एन्ट्रन्स रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोगो का स्वागत होता है हम देख सकते है सीढ़ियों से गुजरते हुवे।

दृश्य मैं हम देख सकते है |की एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर लिखा हुआ है अ के पिल्लर्स पर श्ट्रो वो कर के और यहाँ पर करमचारी भी मोजूद है | जो की यहाँ पर यूनीफार्म मैं है।

इस दृश्य मैं हम देख सकते है | यहाँ पर एक इंडियन ऑइल का पेट्रोल पंप है जो की यहाँ पर नारंगी रंग से आकर्षित करता है।

इस दृश्य मैं हम ये देख सकते है | की एक रेलवे स्टेशन है | जहाँ पर रेलवे ट्रैक मोजूद है और यहाँ पर एक रेलगाड़ी भी मौजूद है जिस पे लिखा है।

और यहां पर हम देख सकते है की -बस स्टॉप वगेरा भी मौजूद है जो यात्री इंतेज़ार के लिए।

अन्ना सांभर इडली डोसा वडा व्हेज तरह के खाना मिलते हे जहाँ पर कही सारे लोग यहाँ पर अं नॉन-वेजीटेरियन होते हे और वेजीटेरियन भी--

इस दृश्य मैं हम देख सकते है की ये एक आर के नॉनवेज रेस्टोरंट है जहाँ पर लज़ीज़ लज़ीज़ स्वादिष्ट खाना मिलता हैं। जैसे के बिरियानी--

कबाब कोरमा मसाला और कई तरह तरह के नॉनवेज मिलते है मास जो के लोग बड़े ही चाव से खाते है।